यहाँ सड़क नज़र आ रही हैं सड़क पर कुछ लोग खड़े हुए हैं यहाँ बैंक के सामने कुछ लोग खड़े नज़र आ रहे हैं एक--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

जिसके कुर्सी का रंग काला दिखाई दे रहा है रंग में बिरंगे छतरियां नज़र आ रही है।

पहाड़ का रंग भूरा दिखाई दे रहा है उसके पीछे पेड़ नज़र आ रहा हैं पेड़ का रंग हरा है इसमें एक लड़का खड़ा हुआ है।

यहाँ तीन रंग के मिट्टी बिछी हुई है नारंगी गुलाबी और पर्पल --

दरवाजे के रंग भूरा दिखाई दे रहा हैं एक नीला पर्दा दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ एक मैदान दिखाई दे रहा है मैदान मे मशीने रखी हुई है मशीन का रंग नीला है।

यहाँ पर रेत पड़ी हुई है रेत का रंग सफेद नज़र आ रहा है ईटे दिखाई दे रही है ईंटो का रंग लाल नज़र आ रहा है।

ऊपर आसमान नज़र आ रहा है आसमान का रंग सफेद है पेड़ दिखाई दे रहा है पेड़ का रंग हरा दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक बड़ा सा लोहे का एक स्टील नज़र आ रहा हैं जिसका रंग--

दीवार दिखाई दे रही हैं दिवार का रंग भूरा नज़र आ रहा हैं उसमे कुछ एक तस्वीर लगी हुई हैं जिसमे कुछ पेंटिंग बनी हुई हैं।

जिसका रंग हरा रंग नज़र आ रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है जिसका रंग हल्का नीला हल्का सफेद नज़र आ रहा है।

ऊपर बोर्ड लगा हुआ हैं जिसमे स्कूल का नाम लिखा हुआ हैं इसमे एक बस बनी हुई हैं जो पीले रंग की हैं।

यहाँ पर एक बहुत सुंदर तालाब नज़र आ रहा है सामने सूर्य अस्त होता दिखाई दे रहा है जो पानी में भी नज़र आ रहा है।

सामने एक पेड़ नज़र आ रहा है उसका रंग हरा नज़र आ रहा है।

इसके पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई है जो की सफेद रंग की हैं आसमान का कलर नीला नज़र आ रहा है।

जिसमें बाहर दो लोग खड़े हुए नज़र आ रहे हैं स्कूल के बाहर दो गाड़िया दिखाई दे रही हैं एक गरम काला--

शर्ट पहना हुआ है आधी भूरी आधी सफेद और आधी ब्राउन है नज़र आ रही है।

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है इधर पेड़ नज़र आ रहा है।

पीछे पेड़ दिखाई दे रहे हैं पेड़ों का रंग हरा नज़र आ रहा है।

यहाँ एक फास्ट फूड कॉर्नर है जिसमें नीचे लाल रंग से फास्ट फूड के--

और भी कुछ फ्रूट रखे हुए हैं सामने दीवार है दीवार का रंग पीला नज़र आ रहा है लड़के ने ब्राउन रंग का टी शर्ट पहना हुआ है।

यहाँ एक तालाब है जिसमें की लोग नहाते हुए नज़र आ रहा है सामने एक नीले रंग का बोर्ड --

इसका रंग सफेद और काला दिखाई दे रहा है।